यह पेट्रोल है जो गाड़ी में लगाया जाता है। यह कोका-कोला है जो पिया जाता है।

यह एक घर है जो जिसके आगे पेड़ पौधे हैं गेट उट लगा हुआ है जो दिखने में सूंदर है नारियाल के पेड़ हैं ।

जो पू पूरा प्रिंट किया हुआ है जो रेड कलर का दरवाजा है।

परमा नाम का यह एक स्कूल है जिसमें क्लासेज किया जाता है।

यहाँ चार यहाँ चार बस है और घर भी है स्टैंड टाइप का लगा हुआ है और बेग भी है आ आगे में घर भी है घर भी है रेड कलर का और मैदान बहुत सूंदर लगता है देखने में और कई सा --